जिसके ऊपर काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

बाहर की ओर पोस्टर लगाए गए हैं बाहर के शेटर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे काफी बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है।

दुकान का दृश्य बना हुआ है जिनके अंदर तीन स्टैचू रखे हुए हैं।

यहां पे तो टेडी दिखाई दे रहे हैं।

हाउस का दृश्य बना हुआ है।

नीचे की ओर मिट्टी भी दिखाई दे रही हैं।

काफी सारे तार भी नजर आ रहे हैं।

शीशे और लकड़ी के मदद से कबड बनाये गये हैं जिसके अन्दर काफी सारे बोतल नजर आ रहे हैं जिनके कलर अनेक हैं।

यहां पे बाहर की ओर एक गाड़ी दिखाई दे रही है।